कुर्सियां पड़ी है जोकि एक फ्रिज के पास है और इस घर को रंग किया हुआ है।

यह बीकानेर का करनी म्यूजियम हैं जिसका कलर व्हाइट हैं यह प्राचीन --

ए_टी_एम है ये इसका गेट शीशे का है यहां एक आदमी खड़ा है।

कुछ गाएं खड़ी हुई है एक बड़ी सी डिग्गी दिखाई दे रही है।

यह एक बिल्डिंग है जिसके आगे तीन चार कारें खड़ी हुई हैं एक जीप भी खड़ी है।

यह एक पार्क की फोटो है जिसके बाहर एक बोर्ड के ऊपर पंचवटी उद्यान --

बुक्स भी रखी हुई है यह--

यह एक सैलून है जिसके ऊपर पंजाब हेयर कट सैलून लिखा हुआ है।

यह एक तस्वीर है जिसमें दो तीन चार लड़के दिखाई दे रहे हैं इसमें एक लड़के का फेस --

स्टोर के ऊपर एक बड़ी टंकी है पानी की उसके पास बड़ी सीढ़ियां भी दिखाई दे रही है।

इस एक खूनटी के ऊपर तार के ऊपर कुछ पाउच अ के नमकीन के कुछ --

वीवो के बड़े बड़े फोन दिखाई दे रहे हैं यहां एक प्योर वॉटर का--

यह एक बीकानेर की बुक शॉप है।